मुझे बिल्डिंग मटेरियल है इससे घर का वो मजबूती मिलता है यह मिट्टी सीमेंट बालू जैसे आदि --

यह समान लोहे की स्टील की छड़े यहाँ पे आप चाहे तो अपने घर के लिए अच्छी कैटेगरी की छड़े और सीमेंट ले --

यहाँ पे आप देख सकते है इस जिम मे म्यूजिक सिस्टम भी है। दोड़ने का भी वो सलीपर सीट है।

आप आके नजदीक ही है तो आके ट्राइ करें इतना स्वादिष्ट ये बनाते है और देख ही सकते है आप।

यहां आप देख सकते है भगवान शंकर भगवान जी खड़े हैं यहां पे लोग दूर-दूर से दर्शन के लिए आए है।

और बत्ती ऊंचे-ऊंचे पहाड़ है यहां पे हरियाली की कोई कमी नहीं है गार्डन जैसा पार्क है यहां पे आप देख सकते है।

और यहां पे फैमिली को ले के जा सकते है यहां पे ए_सी की भी सुविधा उपलब्ध है आप यहां पे रहने के ठहरने के सुविधाएं है।

आप इसके प्रवेश कर सकते हैं इसमें आई.डी. कार्ड लगता है एयर फोर्स का आप बनवा सकते हैं।

सब चीज़े नया है और आप चाहे तो यहाँ पे जॉइन कर सकते है आपकी नजदीकी और आप पता भी कर सकते है कि ये कहाँ पे है ये जिम बहुत ही सुंदर --